बोर्ड एवं लाइट भी दिखाई दे रहे है और बड़े बड़े वायर भी दिखाई दे रहे हैं।

छोटे-छोटे पेड़ पौधे और बड़े-बड़े मैदान भी दिखाई दे रहे हैं।

यहा पर स्टील का बेसिन भी दिखाई दे रहा है एवं एक ब्लू कलर का जार भी है।

यह एक स्कूल का दृश्य है।

इस्कूल के बाहर में बहुत बड़ा बैनर दिखाई दे रहा है जिस पर रोटरी स्कूल आनंद संकरचन पुरपलामु जे_एच पिन ऐट टू टू वन वन जीरो लिखा हुआ है।

यहां पर कई सारे आदमी भी दिखाई दे रहे हैं जो कि जैकेट पहने हुए हैं।

बैंक के बाहर में कई सारे बाइक लगे हुए हैं एक बाइक के हैंडल पर हेलमेट दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है जो की लाल कलर का है। उसमें प्लीज लिखा हुआ है।

यहां पर अ होटल के सीलिंग में कई सारे पंखा भी दिखाई दे रहे हैं।

रंग बिरंगे कपड़े जो कि अलमारी में सजा कर रखे हुए हैं।

इसके सीलिंग पर पुट्टी किया गया है और यह व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

यहां पर रूम में के दीवार में एक बैनर भी लगा हुआ है जिस पर विश्व रक्त दाता चौदह जून लिखा हुआ है।

जहाँ पर बिल्डिंगों के बीच बीच में कई सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर तालाब के किनारे में कई सारे कूड़े कचरे दिखाई दे रहे--

यह एक रोड का दृश्य है।

यह एक पार्टी का दृश्य है जहां पर टेंट के ऊपर में कई इस्पा कई प्रकार के रंग बिरंगे बैलून लगाए गए हैं।

कुर्सियों का कलर ब्लैक एवम व्हाइट है यहां पर अलमारी में सजाकर डिब्बे में कई सारे बीज रखे गए हैं।

यहां पर जमीन में मैट का प्रयोग किया गया है जो की रेड एवं ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

टेबल के ऊपर व्हाइट कलर को कपड़े से ढका गया है।

यह एक रेस्टोरेंट का दृश्य है जहां पर रेस्टोरेंट के बाहर में उसके बैनर में रॉयल ब्लू फैमिली रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

एवं नीचे ही अल्मुनियम के पाइप में कई सारे मेडल टंगे हुए हैं।